शॉप में रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है एक यलो बोर्ड पर--

कुछ लेडिस है और कुछ जेंट्स है जहाँ वो बैठे है उसके पीछे--

यहाँ पर मुझे एक कैंपस नज़र आ रहा है।

सामने बाउंड्री है बाउंड्री के सामने एक पानी की टंकी नजर आ रही है।

यहाँ मुझे एक शॉप नज़र आ रही है।

और कुछ कारे नज़र आ रही है और बाउंड्री बनी हुई है चेक्स चेक --

सी_यु_बी एटीएम लिखा है ओ ब्लू और रेड कलर मे लिखा है।

झील के पिछे साइड पे नज़र आ रहै है।

जे_ सी_ बी के पीछे एक आदमी खड़ा है और जे_ सी_ बी मिट्टी निकाल रही है।

यहाँ पर मुझे झील दिखाई दे रही है।

उसकी डेक्स पर आदमी ने ब्लू_कलर की कपड़े पहना है।

टायर के ऊपर शेड नज़र आ रहा है टीन का उसके सामने एक घर नज़र आ रहा है।

यहाँ पर मुझे एक लॉन दिख रहा है लॉन में मुझे टेबल और चेयर दिख रहे है।

यहाँ पर मझे ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड में बहुत सारी चेयर लगी हुई है वाइट कलर की और रेड कलर की सामने स्टेज बना हुआ है।

और दो विंडो दिख रही है वाल पर छोटी सी --

कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स नजर आ रहे हैं।

चॉकलेट में डेरी मिल्क सिल्क लिखा हुआ है।

और रेड कलर की पेस्ट्री नजर आ रही है।

शेड के पीछे साइड ट्री दिख रही है शेड के--

वुडेन टाइल्स नजर आ रही है और एक कपडा नजर आ रहा है।